एगो मंदिर हउए खूब निक लागताटे जो खूब ढे इंसान बाटे और ये मंदिरिया खूब निक लागताटे खूब निक सजावल गैल बाटे और इ दूगो मंदिर बा।